तस्वीर में ये कार रिपेयरिंग की शॉप है।

जिसका इंतजार शायद कुछ यात्री कर रहे हैं।

तस्वीर में एक दुकान दिख रही है जिसके बाहर टेबल पर बहुत सारे झाड़ू रखे हुए हैं।

दो तीन कुर्सियां पड़ी हुई हैं जिसमें एक बड़ी ब्राउन कलर की कुर्सी दो छोटी छोटी ब्लैक कुर्सियां।

एक मूर्ति गणेशा तो एक मूर्ति कार्तिकेय की है।

पीछे बैग टंगा हुआ है एक महिला ने नीले कलर की साड़ी पेहनी है और गुलाबी कलर का स्वेटर ।

बहोत सारी टेबल और चेयर रखी है।

ये एक रेस्टोरेंट है जिसमें चार पांच टेबल्स रखी हुई हैं।